यहाँ बहुत सारे फूल पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जो कि ऑफिस लग रहा है।

ये एक जोकर खड़ा हुआ है स्टेज में।

खड़े और बैठे दिख रहे हैं।

ये एक कमरा है।

पेड़-पौधे दिखाई दे रही है।

कुछ लोग बैठे हुए हैं।

ये एक ऑफिस दिख रही है बहुत बड़ी--

घासों की डिजाइन बनी हुई दिख रही है।

कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

नीचे गाड़ी की टायर रखी दिखाई दे रही है ।

ये एक ग्राउंड' --

और बाइकें दिखाई दे रही हैं।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

बोर्ड दिख रही है।

दिखाई दे रहा है और--

खरीदते हुए और बेचते हुए दिख रहे हैं।

ये एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

जिस पे फॉर्टिस लिखी हुई--

जिस पे लिखा है।

यह एक सड़क दिखाई दे रही है।

एक बिल्डिंग में नीले रंग से--

जहां बड़े-बड़े नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और --

आस-पास पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

ये एक सैलून दिखाई दे रही है।

ये एक ऑफिस दिखाई दे रही है।

एक लड़के का बाल काटते हुए दिख रहा है।

जहाँ दो लाल रंग की कुर्सियां और सफेद रंग की गोल टेबल --

चार पांच लोग बैठे दिख रहे हैं।